कोई कमर्शियल छोटी सी बिल्डिंग हो ऐसा हमें नज़र आ रहा है।

इस चित्र में ऐसा दिख रहा है की दो माले का बड़ा सा टेनमेंट मकान दिख रहा है।

और शायद बाजू में उस उस बैंक भी होगी ऐसा हमें नज़र आ रहा।

इस चित्र में हमें एक रूम में एक फूड की डिश नजर आ रही है।

सांस्कृतिक को सा संसाधनों के साथ।

इस चित्र में हमें अंदर से छोटी-सी ऑफिस जैसा बनाया हुआ है ऐसा हमें नज़र आ रहा है।

न्यूटन पब्लिक स्कूल --

लगाया हुआ ऐसा नज़र आ रहा।

इस चित्र में हमें लाल रंग की अच्छी-सी छोटी-सी मस्जिद बनाई हो --

और डॉक्टर उसकी सारवार कर रहें ऐसा हमें दिखाई दे रहा है।

काफी चौड़ा-सा रोड दिख रहा है।